बस ट्रीमर विमर रखा हुआ है जैसा की आप देख रहे हैं कैची वैचि रखा हुआ है और ऊपर से लाइटिंग बहुत अच्छा ये मिरर है ऐसे मिरर के बारे में मैं फिर से बोलना चाहता हूँ गायस ये ब्लू मिरर क्यों नहीं लगाते भाई ब्लू मिरर में जो मजा आता है ना गायस कुछ अलग ही फील आती है गायस फील इट गायस फील इट

इसे बहोत बड़ा सा पुल है उसके नीचे बहोत ज्यादा गहरी नदी है इसके पानी रफ्तार जैसे आप देख रहे होंगे और पानी की रफ्तार से ऐसी चीजे नीचे अ-उ-डंडा गाड़ा हुआ हैना गाय्स डंडा इसे गाड़ा हुआ है क्युकी कितना फिट पानी है उस--

दो गाइस ये एक गाव का छोटा - सा पुल है जिसपे गाइस ये तीन चार मोटरसाइकिल वाला फस गए हैं तो गाइस इसको केसे निकाला जाये मे सोच रहा हूं दिमाग लागे उसको निकाल लूंगा क्युकी गाइस ये लोग यहां बैठ के बात कर रहैं है गाइस वहाँ बात नहीं कर रहैं थे।

टेबल पे कुछ कुछ कर रहे है हां ये टेबल पे कुछ कर रहे इसका मतलब क्या ही बोले या टेबल पे कुछ कर रहे इसका मतलब में कुछ नहीं कर सकता हूँ जो है वो टेबल पे आप आये चाय वाय पी सकते है बैठ के इधर मस्त नास्ता बासता कर सकते है।

जैसे की आप यहा पर देख रहे इनमे उर्दू मे लिखा हुआ है लेकिन इनका लिखा हुआ सही है इसके बाहर वो बिल्डिंग बना हुआ है बहोत बड़ा बिल्डिंग के बाहर दो दो बाइक्स लगी हुई है एक तीसरी बाइक जिसके ऊपर एक लौंडा बैठा हुआ है जिसके हेलमेट लेके बैठा--

सही फिटनेस हो जाता है एक दम सब कुछ फ्री रहता है खून चलता रहता है ब्लडइंग एक दम चालू रहती हैं तो है भाई ये सही चीज हैं ब्लडइंग चलना ही चाहिए बन नहीं होता हैं सही रहता हैं ब्लडइंग आगे से पीछे भी चालू होना चाहिए गाय्स एक दम जम जाएगा तो वो खून जम जाएगा खून --

ओर बाल मे पानी मारने वाला स्प्रे भी रखा हुआ है और यहा पे मेकअप के लिए कुछ कुछ सामान भी रखे हुए है और दो दो चेयर रखी है जिसके ऊपर रुमाल भी रखा हुआ है तो गाइस मे सोच रहा हु की कल जाके अपना बाल क्युकी मेरा बाल चोमू जैसा लग रहा है देखने में क्या गाइस मे टकला हो जाता हु।

ये सब जहाँ से देख रहे है यहाँ पे बिल्डिंग है बहुत अच्छा सा और इसके ऊपर वो भी लगा हुआ है और नीचे पत्ते-वत्ते भी गिरे हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में और लोकेशन बहुत अच्छा है दो-दो नाव अ दो-दो पुल है तो पुल के ऊपर सब गए है ताकि फोटो वोटो - भी खिंचा स --